यहां मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे--

यहां मुझे कुछ लोग दिखाई दे --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

इस तस्वीर में मुझे लोकसेवा केन्द्र दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बेंच दिखाई दे रही है।